पीछे पेड़ हैं और रेलिंग दिखाई दे रही हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

टेबल्स रखी हुई हैं।

सामने एक झूला दिखाई दे रहा हैं।

सामने एक इमारत दिखाई दे रही है।

दीवार दिखाई दे रहीं हैं उसके ऊपर--

नीचे कुछ मैदान सा एक घास फूस दिखाई दे रही हैं हरी घास और एक पेड़ लगा हुआ है।

सबसे प पहली बस है उसका रंग सफेद रंग का है।

सामने तीन लड़के खड़े हुए हैं।

स्लेटी रंग का कोट पहन रखा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।